जहाँ पर पुरानी दीवार भी दिखाई दे रही है।

यहाँ पर एक अमर अमर दिखाईं दे रहा है।

यहाँ पर ऊपर की और एक लाल कलर नीचे ब्लू कलर में दिखाई दे रहा है।

यहाँ पर एक कोई पीली कलर की टी शर्ट पहना है।

ठेले लगे हुए दिखाई दे रहे है जहाँ पर एक पेड़--

जहाँ पर कुछ पब्लिक दिखाई दे रही है।

ये कुछ पानी के फुव्वारे लगे हुए दिखाई दे रहे है जहाँ पर--